और बड़ा सा गेट काले रंग का दिखाई दे रहा है सीडीए है अंदर जाने के लिए फर्श का रंग काला है।

ये एक आ स्विमिंग पूल है जिसका पानी का रंग नीला है और इसमे फुवारा चलता हुआ दिख रहा है आस पास बड़े बड़े पेड़ दिख दिख रहे--